इसमें एक गार्डन नजर आ रहा है जिसके अंदर दो चार बच्चे चलते हुए और खेलते हुए नजर आ रहे हैं एक नीम का पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस ग्रॉसरी स्टोर में बहुत सामान मिलता है।

इस पर सफेद रंग की प्लाई चढ़ाई गई है और ईनके सामने काले रंग की कुर्सियां रखी गई है।

इसमें एक लड़कियों के कपड़ों की दुकान दिखे नजर आ रही है जिसमें बच्चों के कपड़े मिलते हैं यहां बहुत सारी।

और यहां से पूरी शहर नजर आ रहा है यहां पर एक सीमेंटेड बैठने के लिए कुर्सी भी लगाई गई है।

इस फोटो में एक मालगाड़ी नजर आ रही है जो की लाल भूरे रंग से रंगी हुई है।

इसमें एक कॉफी स्टॉल नजर आ रहा है और काफी स्टॉल पर दो कांच के जार नजर आ रहे हैं।

और यह किसी बच्चे का रूम लग रहा है और इसके ऊपर एक--

ए_सी लगा हुआ है जो कि सफेद रंग का है।

यह एक कॉफ़ी शॉप लग रही है जहां पर कॉफ़ी के कप रखे हुए हैं और अंदर की तरफ में दो से तीन व्यक्ति खड़े --

इस फोटो में दो बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि डांस करते हुए नजर आ रहे हैं इनके पीछे की साइड में कुछ गुब्बारे लगे हुए--

एक बहुत बड़ा पहाड़ भी नजर आ रहा है जंतर मंतर में एक गार्डन बना हुआ है जो कि घास से ढका हुआ है।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

जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है बाहर दो आदमी भी खड़े हैं और एक स्कूटी भी खड़ी --

इसके दरवाजे पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बिल्डिंग से उतरने वाली सीढ़ियों पर भी बहुत सारे लोग खड़े--

इसके अंदर चार प्लेटे रखी हुई है जो की सफेद रंग की है और यहां पर एक टेबल और कुर्सियां रखी हुई है।